सामने एक जंगल दिख रहा है | जंगल के अंदर कई पेड़ हैं | पेड़ हरे कलर के हैं सामने एक जाली लगी हुई है जाली का कलर काला है

सामने की और मेला भरा रहा है मेले मे कई लोग है ।

एक दादा खड़े हुए हैं जिनके सिर पर बड़ी सी टोकरी है और गेहूवो की बाले है ।

नीचे की ओर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसपे कांच लगा हुआ है और ऊपर की ओर पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के ऊपर आसमान दिख रहा है।

यहाँ सामने की और एक बाइक खड़े होने की जगह हे वहां पर कई तरीके की बाइक खड़ी हुई है सामने दो आदमी खड़े हुए है जो की एक ऑटो को सुधार रहे है ।

यहाँ सामने की ओर एक चोड़ा सा मैदान दिख रहा है। मैदान के सामने एक बड़ा सा मकान हैं। मकान के आजू बाजू से हरे कलर के पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।